पीछे की ओर कई सारे अन्य वाहने मौजूद हैं।

इस तस्वीर में सामने एक नीले रंग की शर्ट पहने व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रहा है।

पीछे की ओर काफी सारे टेबल पंखे लगे हुए हैं।

कमरे का फर्श टाइल्स का बना हुआ है।

यह एक श्रृंगार दुकान के अंदर का दृश्य है।

दुकान के दीवार पे कई सारी बिंदिया लटकी हुई है।

दुकान की दीवार सफेद रंग की है।

मकान के आगमन द्वारा के पास--

दो तीन बुजुर्ग महिला बैठी हुई है।

रेस्टोरेंट की छत करकट की बनी हुई है।

इस किताब दुकान के आसपास भी कई दुकानें और मौजूद हैं।

आस पास कई सारे पेड़ पौधे तथा छोटे छोटे मकान भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

मौसम भी काफी शांत और सुहाना हो रखा है।

तालाब का पानी काफी शांत है।

सामने एक नई स्पोर्ट्स साइकिल रखी हुई है।

ऊपर की ओर झालर वह फूल के मालों से सजाया गया है।

पीछे की ओर काफी सारे फूलों के गुलदस्ते टंगे हुए हैं।

इस तस्वीर में सामने कई सारे ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर रखे हुए हैं।

यह एक कपड़े की दुकान का दृश्य है।

सामने कुछ लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

फर्श टाइल्स का बना हुआ है।

फर्श टाइल्स की मदद से बना हुआ है।

कुछ सबसे ऊपर टॉप पे भी रखे हुए हैं।

सामने की और भी कुछ कपड़े डब्बे में पैक्ड रखे हुए हैं।

काफी सारी अच्छी अच्छी सजावट भी की गई है।

एक स्टेडियम ग्राउंड में मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

दो लोग सामने क्रिकेट खेल रहे हैं।